यह एक टायर का वर्कशॉप है यहां पर गाड़ियां आती है टायर चेंज होते हैं।

के अंदर बहुत सारे लोग भी बैठे हुए हैं।

सेट के राइट साइड में नीला कलर का पुता हुआ है सेट के फ्रंट में--

एक पीले कलर का वर्कशॉप है जहां मशीनों --

कलर का बैलून नीले कलर का बैलून गुलाबी कलर का बैलून हरे कलर का बैलून --

लाल टमाटर है कुछ पीले टमाटर है कुछ हरे टमाटर है।

बजमान सफेद कलर की बनियाइन और सिर में साफा लगाए हुए पैर मोड़कर बैठे हुए है।

बेड भी बिछा हुआ है फर्स में टाइल्स लगी हुई है।